यहाँ कुछ पेड़ पौधे दिख रहे है जो हरे और काले कलर की दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक कमरा है जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है उसमें ए.सी. लगी हुई है जो सफेद कलर की दिख रही है एक बेड है जिसपे दो तकिये दिख रहें हैं एक चादर दिख रहा है एक कम्बल दिख रहा है।

बस ये सफेद कलर के जो ऑरेंज कलर का दिखा --

और काली कलर की देख रही है और उनपे सफेद कलर की पन्नी चढ़ी हुई है।